और यहां यहाँ दूर दूर से--

यह जामताड़ा रैलवे स्टेशन हैं।

यह एक पहाड़ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते है घूमने और यहाँ पे--

ये एक रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन काफी बड़ा है।

बर्थडे मनाया जा रहा हैं।

बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे रूकती हैं।

विथड्रॉ करने और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है सुबह के समय में काफी सारे लोग आते है पैसे उठाने--